यहाँ बहोत सारा लड़की हैं छोटा-छोटा जो की डांस कर रही हैं और बहोत अच्छा डांस कर रही हैं और बहोत लोग देख रहे हैं इस डांस को और बहोत अच्छा लग रहा है देखने में और बहोत सारा लाइट लगा है।

ये स्कूल है जो की यहाँ बहुत सारा बच्चे बना रहें हैं चित्र जो की चित्र हम लोगों को बनाना चाहिए बहुत अच्छा होता है चित्र एक ऐसा कला है जो की चित्र से हम लोग बहुत चीज --

इसमें बहुत बड़ा सा घर है जो कि बहुत अच्छा से बनाया है बहुत अच्छा घर का डिजाइन है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में घर के नीचे कांच का गेट लगा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

टैम्पू भी है जिसके कारण हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा --

ये एक बहुत बड़ा हाल है जो की बहुत अच्छा बना है फिर बहुत सारा सोफा लगा है बहुत लोग हैं बहुत सारे लाइट्स लगा हैं जो की अच्छा लग रहा है देखने में बहुत भीड़ भी है जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

एक बहुत ही अच्छा सा घर बना रहा है जो कि बहुत अच्छा डिजाइनिंग है इसके पीछे एक बड़ा टॉवर और इस घर में बहुत ही मेहनत लगा है बन बनाने में जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और अभी भी बना रहा है इस घर को तुम --

स्कूल है जो कि यहां बोहोत सारा भीड़ ये है। कोई प्रोग्राम है जो कि बोहोत वहां देखने आए हैं बहुत सारा भीड़ है। बोहोत अच्छा लग रहा है देखने में। हम लोग भी गए हैं। बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

ये छोटा सा गली है जो कि इस गली में दोनों साइड घर है और एक कार खाड़ा है जो कि कार होने के कारण हम लोग को बहुत सुविधा मिल गया है एक जगह से दूसरे जगह जाने में इमरजेंसी में हम लोग कार को बुला सकते हैं।